और मुझे यहाँ पर मंदिर भी दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे--

मुझे यहाँ पर स्कूटर दिखाई दे रहा है और मुझे बहुत सारे घर भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कपड़ों --

यहाँ पर बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहाँ पर बल्ब भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ --